ये बोहुत बड़ा पुराना टाइप का किला देखने में लग रहा है। इसको अभी काम की जरुरत है। इसमें पेड़-पौधे बगल से जा रहे हैं जो कि एक एसिएंट हिस्ट्री टाइप का लग रहा है और बोहुत ही --

शुद्ध वातावरण का हवा ले रहे है और ये जूता पहने हुए है और ब्लेज़र भी पहने हुए है। यहाँ पे बगल में कुछ पेड़-पौधा भी लगे --

और यहाँ पे आके आप भी ईलाज करा सकते हैं।